ये नाई की शॉप है। यहाँ क्व शु सैलून है। जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए है। एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है। बैनर भी लगे है जिसपे लड़के छप रहे है।

यहाँ पे लेडीज सामान मिल रहा है। देखिये हेयर बैंड है। क्लेचर है। मालाएं है गले मैं पहनने के लिए ये पेंडेंट ये सेट वगैरह है।

वो नीचे काफी बड़ा ये हॉल है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए है।

मतलब वो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए है। जो कि अलग -अलग भाषा में है। कुछ लोग बाहर खड़े हुए है। तीन चार लोग और अन्दर एक कॉफ़ी पी --

रूम है एक मॉल है जिसमें कपड़े लगे हुए है काफी शर्ट कुर्तियां टॉवल और जी स्कर्ट छोटी-छोटी मतलब हर चीज यहाँ पे बैग्स वगैरा मतलब चादर कपड़े वगैरा अच्छी-अच्छी कुर्तियाँ टंगी हुई हैं।

नुमाइश है या कोई मेला लगा हुआ है। ऊपर यहाँ पे झूला लगा हुआ है। लाइटे लगी हुई है। कुछ ल काफी लोग घूम रहें पब्लिक घूम रही है यहाँ पे --

यहाँ पे काफी सारे दो लोग दो जैंट्स खड़े है हाथ मिला रहे है। लाइटें अ कलरफुल लग रही हैं यहाँ पर काफी सुंदर लग --

ये एक एक सामान रखे हुए है। गमले रखे हुए है जो अ डलिया वगेरा है जो कि बुने हुए हाथ से बनाये गए है। बुनाई करी गई है इनकी।

उस पास एक पेड़ है जिसे घीवर का पेड़ होता है। ऐलोवेरे का पेड़ होता है। उस टाइप का पेड़ है। जो पास इधर-उधर देख रहे है जानवर --

लकड़ी का जैसे कि वो घर बिल्डिंग वगैरा जैसे कोई नक्शा तैयार किया गया है। कोई शहर का कोई कालोनी का इस टाइप का ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है।

गली गली है शायद जो कि रोड है रोड है शायद कच्ची सी लग रही है। आस पास काफी मकान है एक बाइक खड़ी हुई है पेड़ खड़ा हुआ है।